और दो वाहन भी--

नीचे की साइड ग्रीन कारपेट बिछी हुई है।

इस पिक्चर में एक--

इसमें लाइट्स भी लगी हुई है।

व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

जिसके अंदर काफी कंफर्टेबल --

टेबल चेयर्स लगी हुई है।

इस पिक्चर में एक--

ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है।

टॉइस भी लगी हुई है।

ये पिक्चर बीच की है।

आगे की साइड काफी सारे--

यह पिक्चर एक गार्डन की है।

आगे की साइड काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

बड़े से पेड़ की है।

स्टेज पे एक सोफा भी लगा हुआ है।

जिसके अंदर काफी तरह के--

एक काफी घना पेड़ भी है।

और ये ऑनलाइन डिलीवरी भी लेता है।

इस पिक्चर में एक--

घर नजर आ रहा है।

जिसका नाम एच_पी वर्ल्ड डिजिटल डिवाइसेस है।

इस पिक्चर में दो पार्क दिख रही है।

जिसके बीच से एक रास्ता निकला हुआ है।

उसके पीछे काफी सारे --

यह पिक्चर एक फूलों की--

दे रहे हैं यहां पर --

यह पिक्चर एक बेडरूम की है।

काफी पुराने स्ट्रक्चर की है।

डांस सीख रहे हैं।

काफी बड़े-बड़े मिरर्स लगे हुए हैं।

यह पिक्चर्स हॉस्टल के --

जिसके अंदर काफी सारे --

यह पिक्चर एक बुक स्टोर की है।

और इसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ नाव पार्क है।

वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स हैं।

कुछ लाइट्स भी हैं।

मर के लेटे हुए हैं।

यह पिक्चर एक पेट्रोल पंप का है।

जहां पर काफी सारे --

स्टील से बने हुए बर्तन बिक रहे हैं।

इस पिक्चर में एक बकरी दिखाई दे रही है।

स्टेज शो की है जिसकी डेकोरेशन --

काफी शानदार है इसमें काफी ज्यादा --

यह पिक्चर एक फुल की है।

जो नदी के अंदर --

यह पिक्चर एक होटल का है।

सेंडविच ए टेंडर अफेयर है।

और यह नाव लकड़ी का है।

इस पिक्चर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

जिसके पीछे एक काफी बड़ा गार्डन है जिसके चारों तरफ काफी सारे --

और कुछ लाइट्स भी लगी हुई है।

यह पिक्चर एक जीटी रोड का है।